अंदर उ बस के अंदर कुछ लोग बैठे है।

उसमें घीसलपट्टी वगेरा झूले-वगेरा लगे है।

राइट हैंड साइड एक गेट लगा हुआ है बड़ा --

एक बिल्डिंग बनी हुई है।

कोई खड़ा हुआ है।

एंड टैक्सी भी है सड़क पर--

गेट के बाहार कार रखी हुई है।